लेकिन आप देख सकते है कि यह सरकारी विभाग कितना सुंदर और कितना बावय लग रहा है।

आप देख सकते हैं कि कई दुकाने भी हैं चाय की दुकान हैं।

पेड़-पौधे भी दिख रहे है और एक --

और यहाँ पे कई अलग-अलग तरह के --

चित्र में दिखाया जा रहा है।

कई जगहों पे यहाँ पे में हमें हरी-भरी चीज़ दिख रही है।

एक बहुत ही अच्छी किराने की दुकान भी हो सकती है।

और लग रखा है कि ये कोलगेट से बनाया हुआ है और --

पेड़ और पौधे दिख रहें हैं।

आप दिख सकते है कि यह घाट बहुत ही --

यहाँ बिल्डिंग बनाने का एक मकसद ये भी होता है ताकि सरकार इन्हे कम दामों में गरीबों को दे सके।

और इस गार्डन पे हमें बहोत बड़े और विशाल पेड़ दिख रहे है।